टेबल है चेयर है ढेर सारा येलो कलर में और--

ब्लैक कलर मे है और यहां का लाइट्स ऑन है और यहां पे ए_सी है।

इस पिक्चर में एक भगवान का मूर्ति है जो की गोल्डन कलर में है और यहां पे चार इंसान इसको पूजा कर रहे है जो कि सब बुड्ढा लग रहा है।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है वाशिंग मशीन बहुत बड़ा वाशिंग मशीन और अलग अलग कलर का वगैरह।

थोड़ा आगे देखने तो वहा मे भी बेम्बु है जो की ग्रीन कलर है और फेनसिंग वाला बेम्बु सब सुख गए हैं।

एक इंसान खड़ा है ये सब कुछ चेक करके हाथ में नोटबुक है।

आइटम्स भी लिखे हुए हैं कॉफी और चाय और साइड में एक दुकान है।

और साइड में आलू रखा हुआ है।

नीचे में दिख रहा है ढेर सारा लोग जो कि अपने काम से जा रहा है।

यहां भी ढेर सारा बाइक है तरह तरह का।

और कुछ गाड़ी का थोड़ा सा साइड दिखाई दे रहा है आगे का पार्ट ।

पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक किचन जैसा कुछ जो कि ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है यहां पे--

पहले तो यहां पे इलेक्ट्रिक से चलाने वाला कुछ है मशीन छोटा सा।

फैन और यहां पे एक ब्लैक कलर का चेयर रखा हुआ है।

और यहां पे क्लॉक है और फैन है यहां पे और यहां पे ढ़ेर सारा सामान है।

उसको देख के पता चल रहा है ये हॉस्टल है गर्ल्स का और यहां पे गेट खुला हुआ है।

और ऊपर में येलो कलर से भी कुछ लिखा है उसके ऊपर में और यहां पे कुछ साइन भी बना हुआ है।

और यहां पे दो गाड़ी है एक ब्लैक और एक वाइट गाड़ी के सामने में कुछ फेंसिंग है।

और ये घर का छत ब्लू कलर में है यहां पे बादल दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें कुछ सामान है और फूल इ सब है।

लाइन लाल कलर का है और दीवार पे ढेर सारा--

फोटो चिपका गया है और उनमें से एक है एपीजे अब्दुल कलाम का और एक है अब्राहम लिंकन का।

इस पिक्चर में है घर जो की येलो कलर का है।

और नीचे में कुछ लोग घूम रहा है यहां पे बहुत सारा ज्यादा तर ड्रेस ब्लैक कलर का है।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक टेबल और उस टेबल के साइड में लिखा है श्याम ।

सामने में एक चेयर है और ये एक दुकान का व्यू लग रहा है और यहां पे ढेर सारा सामान है।

इस पिक्चर में कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जोकि आगे में केक है और साइड में--

इस पिक्चर में एक बच्चा है जोकि पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है दोनों लेफ्ट और राइट से पकड़ के।

और बीच में एस_बी_आई कार्ड लिख के है।

और पीछे मे बिक्रोनजो पुरा डिकोरेट किया हुआ है और वहां पे लव का साइन --

और यहां में लाल कलर का टेबल लैंप है।

सफेद कलर का है और दीवार में एक छोटा सा स्विच बॉक्स है।

अलग अलग कलर में यहां में अंदर देखो तो यहां का लाइट्स ऑन है।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कुछ फूल जैसा।

यह सब्जी भी हो सकता है यहाँ मे और यहां का लिव्स --

कि इनको देख रहा है और वो चप्पल पहना हुआ है और लड़कियां भी चप्पल पहना हुआ है।

और यहां पे टेबल है और वहां पे कैंची है वहां पे कुछ पेपर है।

और ग्लू है कॉटन है और कुछ फूल बनाए हैं ये लोग और--

और यहां में एक स्टैचू है जिसपे कपड़ा पहना के है।

पीछे में एक दरवाजा है जो कि हमें बंद दिखाई दे रहा है।

और अंदर देखो तो छोटा छोटा सा हाथ बना के हुआ है और एक बंबू का पेड़ है यहां पे और पीछे में और भी--